जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि एक सड़क पर--

एक व्हाइट कलर की सफेद रंग की गाड़ी खड़ी है।

और इन्होंने सफेद रंग का वस्त्र पहना है और सीढ़ियों पर खड़े हुए हैं।

और काफी सारी लकड़ियां है जिसकी हेल्प से ये बनता है।

और काफी हरियाली भी है और ये व्यू काफी भी सुंदर है।

अ यहां पर एक औरत भी नजर आ रही है जो माथा टेक रही है।

उनको शायद एसेंचुअल चीजें दी जा रही है।